इस इमेज में यहां पर एक फल वाला दुकान दिखाई दे रहा है जहां पे दो लड़के पीछे बैग टांगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कई सारे पलंग लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक सड़क के किनारे बिल्डिंग दिखाई दे रही है और नीचे कई सारे कारे खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है उसके नीचे कुछ लड़की खड़ी होकर आपस में बातें करती नजर आ रही है।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और साइड में एक पेड़ भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक पुल दिखाई दे रहा है और यहां पर नीचे कुछ लोग खड़े होकर बातें करते दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जहां पर डबल बेड लगा है और दीवार पर एक टी_वी भी नजर आ रही है।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

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहाँ पर एक चिड़ियाघर दिखाई दे रहा है जहां पर पानी के अंदर कुछ बत्तख तैरते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक किले की दीवार दिखाई दे रही है और यहां पर नीचे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा जाली का घर दिखाई दे रहा है और वहां पर रास्ते पे दो लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में देखियेगा सामने यहाँ पर एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ लोग बैठ कर कुर्सी पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बुक स्टाइल दिखाई दे रही है जहां पर कुछ लोग किताबें खरीदते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे देखिएयेगा सामने यहां पर सड़क पर कुछ दुकानें दिखाई दे रही है और यहां पर एक व्हाइट कलर की कार और एक्टिवा खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहां पर सड़क पर कुछ ऑटो रिक्शा चलती हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक टेबल के ऊपर प्लेट्स दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर पुलाव रखा हुआ नजर आ रहा है।